ये एक बहोत सुन्दर पारक है और बहोत ही सुन्दर प्रकृति का बहोत ही अच्छा रूप।

और इस फिगर में आपको ऊपर मंदिर का नाम श्री श्याम मंदिर लिखा हुआ है। शिवालय आप पर --

ये तो पता नहीं बल्कि ये आदमी से पूछना पड़ेगा।

ये एक रात का दृश्य है जिसमें एक लड़का की प्रैक्टिस करता हुआ क्रिकेट खेल रहा है।